यहां मुझे कुछ सोफे दिखाई दे रहे हैं।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

इस तस्वीर में मुझे एक मैदान दिखाई दे रहीं है।

यहाँ मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहें हैं।

इस तस्वीर में मुझे कुछ ऑटो दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक बिल्डिंग दिखाई दे रहीं हैं।

यहां मुझे दो खिड़की दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे एक नाव दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर में मुझे एक जिम दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे होटल महलवार दिखाई दे रहा है।